और इस क्लॉक टावर को लाइट से सजाया गया है और यह देखने में बहुत ही ऊंची है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में ।

यह लग रहा है कि एक नदी है जिसमें एक वोट लेकर एक आदमी जा रहा है और बहुत पानी है दूध दूध पानी दिखाई दे रहा है और बहुत दूर में एक चिमनी है चिमनी भी दिखाई दे रहा है।

यह लग रहा है कोई गार्डन है और यहां पर बहुत सारी पेड़ पौधे भी लगे हुए है और एक बैठने के लिए भी जगह बनाई गई हैं।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

ये लग रहा है कि एक सैलून है और इस सैलून के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ हैं।